बाकि दो वाईट कलर के पॉट दो टोकनी हे।

भाड़ ए भीड़-भाड़ जैसा एरिया दिखाई दे रहा है।

की दिखाई दे रहीं हैं कुछ लेडीज जेंट्स भी दिख रहें --

छोटे-बड़े पेड़ दिख रहे हैं। हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

चौकी टाइप की बनी हुई है जिस --

यहाँ पर हम देख रहे हैं बहोत ही सुंदर डिज़ --

लकड़ी का उसमे पोलिश किया गया है।

ओर यहाँ के जो इश्टुडेन्ट है वो शब लाइन से --